और पंखे लगे हुए हैं और पीछे प्लास्टिक का--

यह एक ढाबा है जिसका नाम जीत पंजाबी ढाबा है।

और ये एक गन्ने का मड़वा बनाया हुआ है और फूल पौधे लगी--